और यहां पे बहुत सारे पेड़ वगैरा लगे और इसके आगे बड़ी सी टीन पड़ी हुई है।

यहां पे एक बिल्डिंग करने वाली मशीन रखी हुई है।

पेड़ वगैरा लगे हुए हैं और नीचे ईट बिछी हुई--

ये एक घर है और इसके बड़ा सा एक गार्डन बना हुआ है।

और कुछ लाल कलर की बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं और यहां पे बहुत सारे पेड़ लगे हैं।

और कुछ कुर्सियां वगैरा पड़ी हुई है बादल का रंग देखने में नीला है।